सात लड़किए योगा कर रही हैं दीवाल पे सफेद कलर है दीवाल पे तीन पेंटिंग हैं एक गिटार हैं एक लड़की योगा करती है।

चार बतकेँ हैं। तीन सफेद कलर की एक थोड़ी लाल सी है। तीन - चार लड़की खड़ी हैं।

ऊपर ऑरेंज कलर का कलर उड़ रहा है। बगल में एक आदमी देख रहा है। एक औरत देख रही है पीछे सफेद पर्दा है बगल में।